एक मंदिर की तरह यह भवन नजर आ रहा है जो बहोत ही सुंदर--

यहां हमें कोई बड़ा सा कारखाना ही दिख रहा है जहां पर बहुत सारे बंडल्स नजर आ रहे हैं।

यहां पर बहोत ही सुंदर सा एक दृश्य हमें दिख रहा है जहां पे--

चलाते हुए नजर आ रहे है और इत साइकल से भी व्यक्ति दिख रहे हैं दूड़ कुछ लड़के भी--

सामने कुछ बोर्ड्स भी रखे हुए दिख रहे हैं।

और यहां पर एक ऊंची सी इमारत पर एक टंकी भी नजर आ रही है बगल में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जोकि सरक के बिल्कुल ही किनारे किसी कारखाने के बगल का है जिसपे--

यहां पर एक सिटी सेंटर सैलून ओपन हुआ है अभी अभी ऐसा लग रहा है बाहर कुर्सियां लगाई गई है फूलों से सजाए गए--